यहाँ शाम का टाइ समय है।

जिसमें अलग-अलग --

जिसके निचे एक स्टेज बना है जिसपे सीढिया भी है।

अ लैंप कागज का बनाया है।

जो बहुत घने और बड़े हैं रात का |

व्यक्ति जो खड़ा व्यक्ति है उसके हाथ में --

घर के पिलर के पास एक --

जिसके बोर्ड पर लिखा है छात्र छात्रावास --

अ अ दरवाजे खिड़की है।

दीवारों को भी रंगा गया है।

अंअ सामने भी एक पोस्टर लगा है।

जिसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची है।

हल्का ब्राउन रंग का है और सफ़ेद है।

छोटे से लेके बड़े तक पेड़ पौधे हैं। काफ़ी बड़े-बड़े पेड़ हैं जो बहुत ही घने हैं। सब --

यह एक बहुत बड़ा घर है जो काफ़ी लम्बा है दो-मंजिला है इस घर का रंग सफ़ेद है।

यहाँ टेबल पे बहुत से समान रखे है यह छत है छत का रंग सफेद है छत पे दो पंखे दिखाई दे रहे है।